कुछ चीज पड़ी है ग्रीन कलर की सामने ही हमें गली--

खिड़कियों पर ग्रीन कलर नहीं ब्लू कलर दिख रहा--

और एक कार दिखाई दे रही है वाइट कलर की।

ब्राउन कलर का यहां पर हमें पंखा दिख रहा है जो कि--

साथ में ही यहां पर हमें--

और यहां पर हमे छत का कलर ग्रीन रेड दिख रहा है।

जो कि व्हाइट कलर की है राधा कृष्ण की मूर्ति।

और कुछ झाड़ियां भी यहां पर दिख रही है।

वुडन की यहां पर डोर लगी हुई है।

यहां पर हमे दिखाई दे रही हैं चेयर्स ।